ओपन सा एरिया जिसे हम कैह सकते हैं एयरपोर्ट और ये एयरलाइंस पे ये प्लेन अभी उड़ेगा।

एक मेडिकल शॉप है जहां एक बंदा अपने--

ये एक अमूल शॉप का ओपनिंग है जहां अमूल शॉप की ओपनिंग हो रही है।

और ये अच्छा सा ओयो रूम सजा है।

एक ओपन रूम हैं बहुत सारे गद्दे हैं इसमें चार गद्दे हैं।

बड़े बड़े पोर्च भी है और सोलर का भी पैनल लगा हुआ है और ये बहुत ही पोर्च एरिया में मुझे लग रहा है।